घर के बाहर का दरवाजे का गेट है जो की बैगनी कलर का है और सफेद कलर में उसमें --

एक अ पेड़ पौधे को घेर के जाली लगाई हुई है बगल में एक वृक्ष है।

जिसमें बहुत सारी मोबाइल के डिब्बे सजे हुए हैं।

टोपी लगाए हुए हैं पीले और सफेद कलर के एक ट्रक जैसा खड़ा हुआ है जिसमें सामान लोड किया जा रहा है।

सामने लोहे का गेट है दूर कुछ व्यक्ती बैठे दिखाई दे रहे हैं सामने की दीवार--

गंदी सी दिखाई दे रही है जिसका पेंट उखड़ा हुआ है।

इसमें एक पटना का बैनर लगा हुआ है जिसमें एक व्यक्ति का चित्र बना है जो की--

एरिया दिख रहा है जोकि स्लेटी टी शर्ट और नीला--

यह एक रूम है जिसपे एक बेड है बेड पे सफेद चद्दर बिछी हुई है और फूल के के चद्दर--

एक पेड़ दिख रहा है जिसमें हरे पत्ते हैं।

पीछे कुछ भूरे कलर का चट्टान दिख रहा है जिसमें काई जमी हुई है पानी का रंग हरा दिख रहा है।

योग सिखाया जा रहा है इस फोटो अ फोटो में एक बड़ी सी चटाई बिछी हुई है लाल कलर की बहोत सारे व्यक्ति बैठे है हाथ जोड़कर।

यह किसी ऑफिस का रूम है जिसमें पांच व्यक्ती हैं।

और टेबल है टेबल में बहुत सारे रजिस्टर रखाये हुए हैं एक लैपटॉप दिख रहा है एक गमला रखा है आर्टिफिशियल अ पौधा लगा हुआ--

सामने घर में एक बोर्ड दिख रहा है जोकि नीले कलर का है और सफेद कलर का उसमें --

एक बाइक खड़ी हुई है। बगल में एक सफेद--

एक सोफा दिख रहा है सोफे पर एक व्यक्ति बैठा है जोकि नीले कलर का टी शर्ट पहना है मोबाइल चला रहा है उसके बगल में एक बैग र --

सामने एक टेबल है जिसमें पानी--

ये किसी मार्ट के अंदर की पिक्चर है जिसमें समान रखे हुए हैं और ऊपर--

यह एक फूल की दुकान है।

गार्डन में लोग योगा करते हुए दिखाई दे रहे--